और बहोत सारी मिट्टी भी डली हुई है पीछे बहुत से पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

पीछे एक मस्जिद बना हुआ है और इसमें एक पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है।

इस शोरूम का उद्घाटन किया गया हैं बाहर कुछ पाइप भी लगा हुआ दिख रहा है एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है।

और धुंध भी छाया हुआ दिख रहा है इसमें कुछ लोग तार कस रहा है कुछ मसाला डालता हुआ दिख रहा है।

नीचे कच्चा फर्श किया गया है और कुछ पेड़ भी लगा हुआ दिख रहा है कुछ झुग्गियां बना हुआ दिख रहा है।

इसमें एक मंदिर बना हुआ दिख रहा है। एक वोडाफोन का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

कुछ भी खड़ा हुआ दिख रहा है और कुछ कुर्सियां डला हुआ है।

पीछे पेड़ लगे हुए हैं और ऊपर आसमान भी है।

और इसमें कुछ टॉवल भी रख दिख रहे हैं और दीवार का कलर सफेद है।

एक मैट भी बिछा हुआ दिख रहा है और इसमें लाइटें भी जलती हुई दिख रही हैं।

यह एक ऑफिस का फोटो दिख रहा है जिसमें कुछ लोग ट्रॉफियां बांटते हुए दिख रहे हैं पीछे विश्व रक्तदाता लिखा हुआ दिख रहा है टेबल पर कुछ डिब्बे रखा हुआ दिख रहा है।

ऐ एक कोई चद्दर का छत दिख रहा है जिसके नीचे क्रेट रखा हुआ दिख रहा हैं बहुत सारा लोग भी है।

यह एक पहाड़ देखा दे रहा है जिसमें बहोत सारी सीढ़ियां बना हुआ है।

एक साइड में गोदाम बना हुआ दिख रहा है पीछे एक लाइट का खम्भा लगा हुआ है।

एक चाऊमीन का ठेला है जिस पे फूलमालाएं चढ़ा हुआ है और इसमें मोमोस का डब्बा भी रखा हुआ है।

पीछे एक खिड़की बना हुआ दिख रहा है और कुछ सामान रखा हुआ है।